देखिए यहां पे मिट्टी रखे हुए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहां पे कुछ लोग हैं बैठे हुए जो कितने अच्छे लग रहे हैं यहां पे एक मकान का घर है वह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहां पे बैंक भी है यहां से पैसा निकाला जाता है बहुत ही लोग आते हैं यहां पे पैसे निकाल कर जाते हैं बगल में पेड़ सभी --

देखिए यहां पे तीन लड़की खड़ी हुई है उसको मुंह ढका हुआ है अच्छे अच्छे रंग के कपड़े पहने हुए यहां पे पर्दा भी लगा हुआ है जो ये लड़की को फेस दिखाई नहीं दे रहा है उसको मुंह के पेपर से ढका हुआ है कितना अच्छा लग रहा है एक लड़की है जो फ्रॉक पहनी हुई है बहोत ही सुंदर दिखने में लग रहा है पैर में चप्पल नहीं है फिर भी अच्छी लग--

देखिए यहां पर कुछ लोग झंडे फहरा रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं? देखने में वह हाथ जोड़कर नमस्कार नमस्ते कर रहे हैं। बहोत ही अच्छे दिखने में लग रहे हैं। यहां पे झंडा कितने अच्छे तरह से सजाया है? कितने अच्छे अच्छे रंग का यहां पर कलर किए हुए हैं? बहोत ही देखने में मस्त लग रहे हैं यहां पर रेड कलर के एक लेडिस साड़ी पहने हुए

इस घर के पास देखिए एक लेडिज जा रही है जो दो बच्चे को लेकर जा रहे है। कितना अच्छा लग रहा है। वहां पर मन्दिर टाइप का एक घर भी है। यहां पे एक झंडा ही लगे हुए है जो रस्सी से बांधे हुए है। यहां पे कुछ अगल-बगल में पौधे भी है जो हरे-भरे कलर के दिख रहे है। बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में कितना अच्छा है।